यह पेड़ ये पेड़ मम बहुत मस्त है तालाब का सूखा हुआ पानी ईई बड़ा मस्त लग रहा है यह पहाड़ का मॉडलिंग थोड़ा बहुत अच्छा है।

यहां का गेट लगा हुआ है और सब बच्चे के पास अलग-अलग कलर के कोपी--

यह जो बैंक है इसमें सीढ़ी है इसके ऊप्स सीढ़ी के ऊपर में गेट बंद है उसके साइड में चार ऐ.सी. टाइप के कुछ लगे पंखे टाइप के यहां दो साइकिल खड़े हैं।

जहा दवाई के ऊपर कुछ लाइट लगे हुए हैं बाहर पे कुछ दवाई के नाम लिखे हुए हैं क्यों व्हाइट कलर के लग रहे हैं ऊपर पे कुछ टीना टाइप के दिए हैं और वहा साइड पे गे--